यहां पर एक ऑटो रिक्शा वाला ऑटो में नीचे बैठके कुछ कर रहा है और एक आदमी काले कलर की जैकिट पहने हुए खड़ा --

जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं जमीन पर लाल मिट्टी है कुछ हरी घास भी है पीछे की तरफ पेड़--

यहां एक गार्डन है यहां पर पानी उम का फव्वारा जैसा चल रहा है जिससे सिंचाई हो रही है और --

यहां एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है यहां नीचे पार्किंग एरिया है वहां पर एक लाल कार खड़ी है उसके पास एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

और वहा सामने की तरफ एक गेट भी लगा है जहां बाहर कारे भी खड़ी हुई है और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

नीचे की तरफ मैदान भी खाली पड़ा है जिसमें हल्की सी हरी घास है और नीचे लाल कलर की मिट्टी जैसी पीछे नारियल का पेड़ भी दिखाई दे रहा।

है और एक लड़की ने चेक्स कलर चेक्स वाली शर्ट पहने हुए पढ़ाई कर रहा --